और उसका बोर्ड का कलर है येलो सामने व्हाइट कलर का बोर्ड भी है।

इस तस्वीर से हम लोगो को मालूम चल रहा है की एक बन्दा मतलब पार्लर है पार्लर में स्किन केयर कर रहा है और एक बन्दा फोटो खीच रहा है।